आपका ऑपिस हो या दफ्तर बहोत अच्छा लग रहा हैं ए_सी लगी है आपका रुम क्लियर दिख रहा है आपकी टेबल स्टूल मशीन --

आपकी एक छोटी सी दुकान में मीटर दिख रहा है।

धरिए धंधा व्यापार की अच्छी लाइकी चल रही है हमारी पसंद है।

ये दवाई हो या कोई भी कार्य करता हो दुकान के लिए हम बहोत बहोत आपका धन्यवाद करते हैं।

हमको बहुत अच्छा लगा आपका सर्विस स्टेशन मात्र गाड़ी ढूंढने के लिए हम को बहुत पसंद है फोन पे चलाते हैं गूगल पे चलाते हैं।

हमको धनबाद । लगा हुआ शटर में माला। जय हिंद जय भारत। लगी हुई टॉर्च लाइट बिजली की धन्यवाद।

छोटे से भले हम पसंद करते हैं किसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

बैठे हुए लोग बैठे हुए बच्चे बैठे हुए लड़कियों हम बहोत अच्छा लगता है खूबसूरत।

लगता हुआ खूबसूरत झुन्ना और पत्थर हमको बहोत पसंद है लगी हुई अगल बगल पौधे बहोत पसंद है।

देखते हुए ये खम्मा चारों खम्मा देखती हुए भगत सिंह की फोटो दिखती है नेहरू बाबा की देखती है सरस्वती की--